और कुछ किताबें भी धारी हुई हैं।

और दो तिरंगे झंडे भी लगे हुए हैं।

और बहुत सारे पेड़ भी है।

और कुछ का कलर पेला भी है और कुछ का कलर काला भी है।

और बहुत सारी लाइटा भी लगी हुई है और रात का समय है।

और साइड में लोहे की कुर्सियां धरी हुई हैं।

और एक लड़के ने पीले कलर का शॉल भी ओढ़ रखा है।